यहाँ पे एक बड़ा बिल्डिंग है। चार या पाँच बाइक लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैदान है वहाँ पे हरे-हरे घास के पौधे हैं और एक बोर्ड भी लगे हुए हैं सामने ।